इधर एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है एक ए_सी दिख रही है कुछ लोग इधर जा रहै एक लड़का बैग लगा कर आ रहा है। एक साइकिल दिख रही है और बहुत सारे बैग्स--